और ऊपर चद्दर दिख रहीं हैं इधर लोहे के कॉलम्स हैं।

आंटी जुड़ा बना रखी है साड़ी पहन रखी है।

अ पोस्टर है पोस्टर पैर व्हाइट कलर के हैं नीचे घ घास है।

और पत्थरो के ऊपर घास उग रही है और घर के ऊपर कुछ लिखा हुआ है घर सफेद कलर के हैं और पेड़ कुछ सूखे हुए--

पेड़ के पीछे दूसरा पेड़ है और ये बाउंड्री हो रखी है।

घर के नीचे डी_जे सिस्टम लगा हुआ है पीछे कुर्सी रखी हुई है इधर पेड़ एक पौधा है।

ये बहोत सारे डब्बे रखे हुए हैं ये यहां तक मुझे लगता है ये मधुमक्खी का शहद बनाने वाले डब्बे हैं।

ये बहोत बड़ा ग्राउंड है उसके बगल में कंपनी है कंपनी की छत व्हाइट एंड ब्लू है और कंपनी बहोत बड़ी है।

पार्क को चारो तरफ से कवर कर रखा है उसके बगल में एक वाइट कलर की दीवार है आधी चटकी हुई आधी सही--

और पीछे ग्रीन ग्रास है उसके पीछे व्हाइट दीवार है उसपे रेड कॉलम है।